मुझे एक सामने की तरफ शादी का घर नजर आ रहा है उसके पास में एक लाल कलर की एक्टिवा भी नजर आ रही है।

के ऊपर और दो जने भी खड़े हुए है साइड मे एक बत्ती जली हुई भी नजर आ रही है मुझे--

मुझे यहाँ का मौसम थोड़ा अच्छा नजर आ रहा है और इसी के साथ यहाँ पे बीच में मुझे गार्डन का एक फूल नजर आ रहा है।

छोटे-छोटे पौधे देखने को मिल रहे है हरियाली काफी ज्यादा दिखने को मिल रही है और ऊपर से नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है काफी दूर-दूर तक देखने को मिल रहा है।

एक ब्रिज नजर आ रहा है जिसके उपर से ट्रेन जाती है और ब्रिज के नीचे में जो पानी काफी ज्यादा पानी नजर आ रहा है।

यहां पे एक तलाब नजर आ रहा है तलाब के पास में मुझे कुछ लोग और नजर आ रहे है और दूर-दूर तक थोड़े-थोड़े लोग और नजर आ रहे है और पड़े पौधे भी नजर आ रहे है और इसी के साथ मौसम भी काफी अच्छा नजर आ रहा है।

उसके पीछे मुझे स्नैक्स बार नजर आ रहा है जो कि उसके अंदर एक आध बंदे बैठे हुए हैं।

खिड़कियाँ दिखाई दे रही है खिड़कियाँ ब्लेक कलर की दिखाई दे रही है।

सीधी सड़क नजर आ रही है एक पत्थर नजर आ रहा है और ऊपर से एक दिवारे भी नजर आ रही है माउन्टिंग टाइप में भी कुछ नजर आ रहा है मौसम भी काफी साफ नजर आ रहा है।

और सामने की तरफ मुझे दो पहिये नजर आ रहे है और उस गाड़ी के ऊपर डी.जे. का एक सिम्बोल भी बना हुआ है।

जे काफी लोग नजर आ रहे है और फ्रूट मार्केट भी नजर आ रहा है जिसके ऊपर से उनने चादर सी डाल रखी है।

मुझे एक प्लेट नजर आ रही है जिस प्लेट के अंदर एक चम्मच और एक कान्टे का चम्मच नजर आ रहा है उसके अंदर एक पनीर का टुकड़ा और एक बटर और एक और भजिया और थोड़े बहुत से प्याज भी नजर आ रहे--

और मुझे एक मैट के पेपर प्लेट नजर रखी हुई नजर आ रही है जो कि चम्मच उसके साइड मे एक प्ले प्लेट नज़र आ रही हैजो की काली कॉलर की खाली नज़र आ रही है।